के ऊपर ब्लू कलर के क्लाउड्स है और साइड में बहुत सारा अलग-अलग तरह का टेंट लगा है और पूजा हो रहा है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग ग्राउंड में हैं।

और साइड में उन को वाश करने के लिए बाल्टी रखा हुआ है।

जिसके ऊपर बहुत सारे अलग-अलग तरह के डिजाइंस बनी हुई है।

जिसपे ओम लिखा है और ये बिल्डिंग के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

इस फोटो में एक रोड है उस रोड के साइड में एक नेता का फोटो लगा है ।

और साइड में बहुत सारे है और मेडिकल --

बेडशीट और साइड में विंडो है।

और नीचे बहुत सारे अलग-अलग तरह के फूल पत्ते हैं जो की एक डेकोरेशन एक शादी के लिए है और सामने एक आदमी जा रहा है।

और स्कूटी पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और ये लोग ट्यूशन सेंटर या फिर एग्जाम सेंटर के बाहर हैं।

जो की बरगद का है और इ नीचे एक फर्श है जिस पर टाइल्स लगी है व्हाइट कलर की |

चिल्ड्रन बॉक्स जहां पे बॉक्स वगेरा मिलती हैं यहां ग्रोसरी के कुछ आइटम मिलते हैं।

स्टेज पे खड़े हैं और वो कुछ एन.सी.सी. --

बहुत सारे वाल्स है जो की वाइट कलर है नीचे ग्राउंड है जो की ब्लैक कलर का है ।

और उसपे एक आदमी बैठा है और ये कैफ़े है।

और बहुत लोग सामने देख रहे हैं आसमान की तरफ।